यह ग्राउंड में बहुत से आदमी भी है एवं बहुत सारे घाँसे भी हैं।

यह सड़क पर बहुत सारी दुकाने भी है एवं यह दुकान काफी बड़ी है।

बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं।

स्टोर है यह बुक स्टोर में बहुत सारे चीज़ मिलते है इस जगह पर अनेक प्रकार की कॉपी किताब कलम अनेक प्रकार के समान रखे जाते --

स्टेज है यह स्टेज काफी बड़ा है यह स्टेज काफी सुन्दर भी है यह स्टेज मे बहुत सुन्दर सुन्दर लाइट लगी गई है ।

यह सड़क है इस सड़क पर बहुत ही सुंदर द्वार बनाए गए हैं।

तलाब है इस तालाब में बहुत ही कम पानी है यह तालाब के किनारे बहो सारे गाये भी हें एवं बहोत सारे पत्थल भी हें यह फत्थल --